इस चित्र में हमें एक बुक स्टोर दिखाई दे रही है।

मंदिर के पीछे ही हमें बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। बीच में हमें पेवर्स से बना एक रोड दिख रहा है।

सामने एक सिक्योरिटी गॉर्ड खड़ा हुआ है।

और जिम के अलग-अलग इक्विपमेंट्स और एक ब्लैक मैट भी दिख रही है।

कार का वॉश किया जा रहा है सामने एक सीढ़ी हमें दिखाई दे रही है एक घर हमें दिखाई दे रहा है ।

और अन्य प्रकार के सब्जियाँ दिख रही हैं जो लोग बेचते दिख रहे हैं जमीन पे --

जो की एक छत भराव का काम कर रहे हैं हमें कुछ सरिया भी दिखाई दे रहा है ।

एक गेट हमें दिखाई दे रहा है वूडन फ्लोर हमें दिखाई दे रही है ।

कुछ खिड़किया हमे दिखाई दे रहे हैं । स्विच बोर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक मॉल दिखाई दे रहा है। मॉल के बाहर कुछ गाड़िया खड़ी हुवी दिखाई दे रही है।

मशीन्स के ऊपर हमें दो बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कुछ बाइक हमे राइट साइड पर नीचे रखी हुई दिखाई दे रही है।